अगल भगल घर बने हुए हैं जोकि सफ़ेद कलर के हैं और यहाँ पे जो लाइटें लगी हुई हैं वो लाल कलर की है इसमें हेडलाइट --

जैसा में देख पा रही हूँ यह एक पहाड़ी गुफा है जिसमें औरत एक अंदर जा रही है कई सारे लोग खड़े हुए हैं।

टैटू बनाया गया है और यहां पर नीले कलर की यहां पर पट्टियों से नाम लिखा हुआ है और यहां के जो पेड़-पौधे लगे हुए हैं।